एक ओरत बुरखा पहना हुए है बच्चा ग्रीन कपड़े पहने हुए--

ये रंग बिरंगे पर्दे नजर आ रहे है रेड --

हुए है और उसके साइड ग्राउंड में ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ भी दिखाई--

वहां पे लोग वर्कआउट करते हुए दिख रहे है।